यहां पे ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत घास है घोड़े दिखाई दे रहे हैं जो आपस में हम सिटके खड़े हैं ।

पेड़ दिखाई दे रहा है झाड़ियां दिखाई दे रही है एक जाली दिखाई दे रही है गमला दिखाई दे रहा है।

एक वाइट कलर का कार दिखाई दे रहा है दूर में एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा जिसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं ।

यहां पे एक दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें बस्टर डायरी फॉर्म लिखा हुआ है बहुत सारी कुरकुरे चिप्स लेस का पैकेट दिखाई दे रहा --

सामने में फूल दिखाई दे रहे हैं फ्रिज दिखाई दे रहा है सीढ़ी दिखाई दे रहा--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

जहां बहुत सारे लोग खड़े हैं कुछ लोग बैठे हैं बोड़े दिखाई दे रहे बेग दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां बहुत सारे बच्चे झूले झूल रहे कुछ लोग बच्चे खड़े हैं कुछ खेल रहे--

पीला और लाल कलर कागेंदा फूल से सजाया गिआ है ।

सामने में एक भगवान दिखाई दे रहे हैं जिसे फूल से सजाया गया है खिरकी दिखाई दे रहा पर्दा दिखाई दे रहा है ।

यहां पे एक सड़क दिखाई दे रहा है जिसके सामने एक बड़ा सा गाड़ी लगा हुआ है जिसमें बहुत सारे बाजे लगे हुए हैं चोंगे लगे हुए हैं।

गाड़ी को पूरा सजाया गया जिसमें लिखा है हिंदुस्तान--

बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं बड़े-बड़े गाड़ियां दिखाई दे रही है कचरा दिखाई दे रहा --

प्लेन दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी खिड़कियां बनी हुई है सीढ़ी दिखाई दे रहा --

उसके दो बड़े-बड़े पंग दिखाई दे रहा है सामने में बहुत सारे गार्ड्स दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

बड़ा सा जमीन दिखाई दे रहा है जिसके पास प्लेन खड़ा है एक पेड़ दिखाई दे रहा आसमान दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहा है।

यहां पे दो लोग दिखाई दे रहे हैं जो माइक लेके खड़े हैं।

रेड कलर का कारपेट दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का कार्पेट दिखाई दे रहा है बहुत सारे तार दिखाई दे रहे हैं।

पर्दे दिखाई दे रहे हैं शीशे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे लाइट दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे सामान दिखाई दे रहे हैं।

सामने में बड़े-बड़े पत्तियां दिखाई दे रही है सुखी लकड़ियां दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है ।

यहां पे एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी गाय है लाल कलर की कुछ वाइट कलर की है ।

यहां पे मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसमें एक फिटनेस जिम लिखा हुआ हैजिसे सेलिब्रेट किया जा रहा है बहुत सारी टॉफी दिखाई दे रहे हैं ।

इसमें मेडल लगा हुआ है टेडी बेयर दिखाई दे रहा है।

ब्लू कलर का बहुत सारे ए_सी दिखाई दे रहे दीवार दिखाई दे रहा कैमरा दिखाई दे रहा है छत दिखाई दे रहा--

यहां पे मुझे एक बड़ा सा ऑफिस दिखाई दे रहा हैजिसके ऊपर बड़ा साअक्षर में एल_आई_सी लिखा हुआ हैजिसमें जीवन वास्ता लिखा हुआ है।

पीछे एक बहुत सुंदर गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर पौधे उगे हुए हैंबाइक दिखाई दे रहा--

बड़े-बड़े पोस्टर दिखाई दे रहा है एक गार्ड दिखाई दे रहा है कार दिखाई दे रहा स्कूटी दिखाई दे रहा --

यहां पर मुझे एक स्टेज दिखाई दे रहा है जिसे पूरा सजाया गया ब्लू कलर का पर्दा दिखाई दे रहा है ।

बहुत सारी लड़कियां दिखाई दे रहा है क्रिसमस दिखाई दे रहा है बैलून दिखाई दे रहा है जो ग्रीन रेड वाइट ब्लू कलर का है टेबल दिखाई दे रहा है स्टेज दिखाई दे रहा है ।

सामने भी खिड़कियां दिखाई दे रहा है जो बहुत सारे हैं।

स्विचबोर्ड दिखाई दे रहा टेबल दिखाई दे रहा--